एक बहोत बड़ा दुकान है दुकान में बहुत सारे आदमी है।

दुकान में बहुत सारे कुरकुरे रखे हुए हैं।

दुकान में एक आदमी बैठा हुआ है दुकान में बहुत सारे कपड़े है दुकान में बहुत सारे लाइटिंग लगे हुए है।

कार रिपेयर हो रहा है।

बगल में एक कार है।

इसमें बहोत सारे लोग खाना खा रहे है।

यहाँ पे बगल में मिठाई का भी दुकान है।

एक बहुत बरा तालाब भी है।

बच्चे लोग बेंच पे बैठे हैं।

दृश्य में एक आदमी एक का दाढ़ी बना रहा है।

उसे ब्लू कलर का कपड़ा पहना रखा हैं।

एक बस के सामने आदमी है।

बाहर में बहुत सारे आदमी हैं।

नीचे बहुत सारे दीप हैं।

एक आदमी दीप पकरे हुए है।

एक बहुत बरा रूम है।

ऊपर में पंखा चल रहा है।

एक बहुत बरा रूम है।

नीचे बहोत सारा सोफा है।

एक बहुत बरा बैंक है।

एक बहुत बरा दुकान है।

तीन कुर्सी रखे हुए हैं।

एक बहुत बरा दुकान है।

बगल में एक ट्रेन है।

यहां पे तीन ए_सी है।

एक बहुत बरा घर है।

एक बहुत बरा दुकान है।

नीचे बहुत सारे काठ के सामान हैं।

यहाँ पे एक पेर है।

एक बहुत बड़ा दुकान है।

सैलून में बहुत सारे आदमी हैं।

एक बहुत बड़ा स्कूल है।

ग्राउंड में बहुत सारे बस है।

नीचे बहुत सारा रोड है।

बगल में एक करकट का घर है।

एक बहुत बड़ा दुकान है।

एक बहोत बड़ा बैंक है।

एक बहुत बड़ा घर है।

एक बहुत बड़ा कोचिंग है।

बाहर में समान बिक रहे है।

बाहर में दो चार आदमी खरे है।

जिसमें आम के पेर है।

पेर के हरे-हरे पत्ते हैं।

बहुत सारे जंगल हैं।

एक ट्रक लगा हुआ है।

एक बहुत बड़ा हॉल है।